यह एक सैलून है जिसके अंदर मैन्स का सैलून है जिसके अंदर कटिंग दाढ़ी कर दी जाती है।

और आस पास में बहुत कांच की दुकानें हैं और बीच में खंबा है इसमें लोग आ जा रहे हैं और ऊपर आसमान साफ दिखाई दे रहा है।

यह एक जिम है इसके अंदर मशीनें पड़ी हैं जो रेस के करने के काम आती है।

यह एक लाइब्रेरी है जिसके बाहर बाइक पर एक लड़का बैठा है जिसका फेस दिखाई नहीं दे रहा --

यह एक हेयर ड्रेसर की दुकान है जिसके बाहर श्री गाजड़मां हेयर ड्रेसर लिखा हुआ है।

जैसे की ठंडक हो रखी है और--

दुकान के ऊपर एक जंगला रखा हुआ है जिसके अंदर लोहे के सरिए की खिड़की बनी हुई है।

स्या सिल्वर कलर से कुछ पेंटिंग की हुई है दीवार पर और आगे एक लड्डू गोपाल पड़ा है।

यह एक रूम है इसके अंदर बेड पड़ा है और इसके आसपास पीले पर्दे लगे हुए हैं।

इस पर यह सफेद रंग की चद्दर लगी हुई है और इसमें एक एल_इ_डी टी_वी लगा हुआ है जोकि अभी बंद है और कोने में एक --

और कोने में एक खंबा है जिसके ऊपर से बहुत सारे तार गुजर रहे हैं और आसमान नीला दिखाई दे रहा है।

यह एक स्कूटी की शॉप है जिसमें बहुत सारे स्कूटी खड़ी है इसमें हरी काली और श्वेत स्कूटी खड़ी है और दीवार पर एक--

यह यह दो मंजिली घर है जिसके आगे खिलजी प्रिंटर्स लिखा हुआ है।

एक खड़ा है इसके ऊपर भी एक कैफ़े है जिसके आगे चांद कैफे लिखा हुआ है।

इसके पास एक आदमी मुंह पर राटा मारे बैठा हुआ है जोकि मच्छियां बेच रहा है और एक आदमी पास में खड़ा है जोकि खरीद रहा --

और ए_सी ठंडी थोड़ी कम दे रही है।

कुछ एल_ई_डी लाइट्स हैं और ड्रिल मशीन वगैरह पड़ी है इसके कोने में एक कैमरा लगा हुआ है और ऊपर पंखा है जो कि चल रहा है।

और इसके अंदर लाइट चालू है और सामने एक पोस्टर लगा हुआ है और एक मैडम और एक सर कुर्सी पे सामने --

और पैलेस लिखा हुआ है आगे एक गणेश जी का चित्र लगा हुआ है और अंदर इसके --

यह एक झरना है इसके अंदर से बहुत मिट्टी का गंदा पानी जा रहा है इसके ऊपर एक पुल बनी हुई है जिसपे लोहे की --